यह एक चित्र है जिसमें हमें बहोत सारी मेजे और कुर्सियां दिखाई दे रही है यहां एक ए_सी भी है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें आ आदमी दिखाई दे रहा है।

और पिंक कलर का फ्रॉक भी पहना है इनमें से एक बच्ची के हाथ में क्ले है।

और एक काउंटर मे काले कलर के अंदर रिसेप्शन लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां सफेद कलर और हरे कलर के गुब्बारे भी लगे हैं।

नदी के ऊपर एक पुल बना है जो लोहे का है।

एक बच्चे ने सफेद कलर का फ्रॉक और एक बच्चे ने काले कलर की पैंट पहनी हुई है।

इसका कलर सफेद है और यहां बहोत सारे फूल भी लगे हुए है जिनका कलर लाल और पीला है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसमें बहोत सारे समान दिखाई दे रहे है इसमें लाल रंग की टोकरी भी दिखाई दे रही है।

मशीन का कलर पीला और काला है यहां डम्बल भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

जिनका कलर काला और लाल है यहां हमें बहुत सारे शीशे भी लगे दिखाई दे रहे--

एक आदमी ने नीले कलर की सल्ट पहनी है। एक आदमी ने सफेद कलर की शर्ट पहनी है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें बहोत सारी फोटोस दिखाई दे रही है।

और एक ने लाल कलर का लहंगा भी पहना हुआ है।

और सामने हमें बहोत सारी लाइटें लगी दिखाई दे रही है।

और यहां हमें फव्वारें भी दिखाई दे रहे हैं। फब और छत पर हमें पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें स्टील के कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं

जिस पर बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं नीचे हमें एक कुर्सी और एक मेज भी दिखाई दे रही है।

सोफे का कलर व्हाइट और पीला है।

और चेयर भी दिखाई दे रही है इनमें एक चेयर का कलर काला भी है और एक आदमी ने नारंगी कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और एक सफेद कलर की गाड़ी भी उतरी हुई है उस बोर्ड पे जी_एम मोटर्स लिखा हुआ है।

इनमें से नीचे हमें एक फर्श दिखाई दे रहा--

यह एक चित्र है जिसमें हमें दो जानवर दिखाई दे रहे हैं।